यहां पर एक राजन फिश मे चेक का दुकान है यहां शादी एवं पार्टियों में --

पहाड़ के पास ये छोटे-छोटे पेड़ है।

आदमी मोटर साइकिल पे हेलमेट लगा के बैठा हुआ है एक हाथ में थैला पकड़ के बैठा है मर्दाना तीन बच्चे हैं।

फ्रॉक भी है बहुत सारे यहां पे साड़िया हैं एक दुकान है।

और उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है और इसमें बहुत सारा लाइटिंग लगा हुआ है।

और यहां पर लाइटिंग भी जल रहा है एक लाल कलर का बक्सा भी है।

यहाँ पर सड़क है बहुत सारा गाड़ियाँ है किनारे में एक दो टोटो है ।

और बहुत सारा पेड़ है पेड़ है और बिजली का लाइन है।